साइडो में रेड और व्हाइट कलर के कर्टेन्स से डेकोरेशन की गई है और--

बहोत ही सुंदर व्यू आ रहा है और आसमान में बादल हो रहे हैं।

और फैन भी लगे हुए हैं।

जिसने ब्लैक कलर की कैप और चश्मा पहना है और व्हाइट कलर की टी_शर्ट --